और दो डॉक्टर हमे दिखा दे रहे है एक ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है साथ ही --

फल टोकरियों मे रखें हुए नजर आ रहें हैं हमे अन्नानाश दिखाई दे रहा है साथ ही सेब भी नजर आ रहें हैं।

हमें एक नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी बहुत शांत लग रहा हैं साथ ही हमे कुछ वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं ।

और पानी की पाइप भी हमे नजर आ रही है ।

साथ ही एक टोकरी मे लौकी रखी हुई दिख रही है एक टोकरी मे हमे हरी मिर्च का ढेर नजर आ रहा है साथ--

साथ ही हमें मिट्टी का ढेर भी नज़र आ रहा है और एक व्यक्ति भी हमें दिखाई दे रहा है हमें ईंट का एक --

हमें कुछ व्यक्ति नजर आ रहें हैं ऐसा लग रहा है कि यह एक मेले का दृश्य है ।

हमे एक बड़ा महल दिखाई दे रहा है महल की गुंबद भी नज़र आ रही है जो गुलाबी रंग की है साथ ही हमे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर हमे--

घड़ी टंगी हुई नज़र आ रही है हमे एक व्यक्ति कक्ष मे बैठ हुआ कुर्सी पर नज़र आ रहा है।

साथ ही हमें मूर्तियों के बाजू मे दीये जलाने का स्थान दिख रहा --

एक लाल रंग का झण्डा लगा हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही और भी झंडे हमें नजर आ रहें हैं।

हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर को बहुत सुंदर सजाया गया है साथ ही मंदिर के अंदर हमें --